यह एक शहर है जो की बहुत प्यार दिख रहा है| और यह पे बहुत सारी बिल्डिंग है और यह पर बिल्डिंगों पर बहुत सारी खिड़किया है| और यह पर रास्ते पे बहुत सारे ऑटो चल रहै है।

और जाली के उस पार बहुत सारे पेड़ पोंधे लगे हुए है।

यहाँ पर कोई फेस्टिवल है जो की यहाँ पर ये अंकल कुछ बुलाने पर आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी डेकरैशन हुई है।

यह पर मच्चईओ की दुकान लगी हुई है| और यह पर एक अंकल है जो की दुकान पे बिल्कुल धियाँ नहीं दे रहे है।

और बहुत अच्छे अच्छे फूल और यहाँ पे एक बेंच रखी हुई है ग्रीन रेड कलर के।

और दुभा बहुत हरी भरी है जो की बहुत प्यारी दिख रही है